वे एक बुन्देलखण्ड शॉप एवं का चित्र दिखाई दे रहा है। अ दुकान पे वुफर वगैरा मिलते हैं।

ये एक कई सारी माँग भरत की का चित्र है और इस डिब्बी में माँग भरने की सिन्दूर है और कई सारी औरते इससे माँग वगैरह भरती हैं।

ये एक एक शक्ति मंदिर पाठक मंदिर का चित्र दिखाई दे रहा है।

और इस द्वार के बहार एक व्यक्ति गाड़ी पे बैठा हुआ है और इसके अंदर कई सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं और उनकी कई सारी चार पहिया की गाड़ी वगैरह भी खड़ी हुई है।